बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर --

जिनके कलर पिंक येलो रेड ग्रीन दिखाई दे रहे है | जिसमे कई वाइट और ब्लैक भी दिखाई दे रहे है |एक बोरी भी दिखाई दे रही है।

वहां पर आसमान का कलर ग्रे सिल्वर दिखाई दे रहा है और एक बाइक दिखाई दे रही है यहां पर कई सारा रे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं |

कुछ ब्लू कलर के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फर्श का कलर ब्लाक दिखाए रहा है|

यहाँ पर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जिनमें कई सारे दुकान दिखाई दे रही है दीवारों का कलर वाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है|